एक रेलवे ट्रैन है जो की काफी अच्छा लग रहा है ये यहाँ पर एक भी ट्रैन खड़ी नहीं है।

और यहाँ पे पराथे मिलते है आलू पराथे नजर आ रहे है पर इसमें एक चीज की कमी है दोती चटनी है और तो न सॉस भी नहीं है।